एक ब्लैक कलर का बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे खिडकियां खिडकियां दिखाई दे रही है इसके ऊपर दोनों कोनों पर --

मुझे एक फॅक्टरी दिखाई दे रही है फॅक्टरी में पुलि जैसा दिखाई दे रहा है पुलि में दो आदमी खड़े हुए है दोनों ने सर में कुछ बंद रखा है उनके पीछे दो प्लेटो में लड्डू रखें हुए दिखाई--

मन्ने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन मे बड़ेबड़े पेड़ दिखाई दे रहे है स्टील की रैलिंग के अंदर हरेहरे घास दिखाई दे रहे है वही पे एक गमला रखा दिखाई दे रहा है जिसमे एक सुंदर सा फूल रखा दिखाई दे रहा है।